पेड़ दिख रहे है बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़--

लोहे का खंभा दिख रहा है आसमान दिख रहा है।

टेबल्स रखी हुई है कुर्सिया रखी हुई है बहुत सारे लोग भी दिख रहे है।

कांच की खिड़किया दिख रही हैं।

एक बड़ा सा घर दिख रहा है कांच ही कांच दिख रहे है उसमे--

पत्थर दिख रहे है बहोत सारा समान दिख रहा हैं।

एक खेत दिख रहा है बहुत हरा-भरा सा इसमे लोग भी दिख रहे है।

बड़े बड़े खंभे दिख रहे है बाइक्स दिख रही हैं।

समुदाय दिख रहा है इधर खड़े दो दिख रहा है महिला